सब भूरे रंग की दिख रहीं है कहीं पे काई जमी हुई है कहीं पे काला दिख रहा है। एक दरवाजा टाइप में दिख रहा है। अगल-बगल आदमियों की तस्वीर बनाई हुई है सीढ़ियां हैं |

एक रस्ता है उस के अलग-बगल तार लगा दी गई है सो पत्ती लगा एक पहाड़ को खोद कर घर जैसे हैं उस में कुछ लोग बैठा दिए गए हैं।

जिम्मेदारियाँ जरा सी इस आदमी पे बहुत सारे मजदूर लगे हुए हैं नीले रंग का है हरी घास है ऊपर चडातू है बगल में भी पेड़ पौधे बहुत है।

यहां पे बड़े घास सूखे पेड़-पौधे उगे हुए हैं नीचे कुछ बंद करने वाला कुआं जैसे है।

पत्थर हैं बड़े-बड़े उ सीढ़ियां है बगल में जिससे ऊपर बहुत सारे लोग चढ़े हुए हैं जो की जींस पहने हुए है। कोई काले रंग का कपड़ा पहना है।

अगल बगल लोहे की जालियां लगा दी गई है स्टील की थाल है अ और बाहर की तरफ पानी रंग पूता हुआ है बिजली की तार है चार खम्बों पर टंगा हुआ है खम्बा कत्थई रंग का है नीचे भूरी मिट्टी--

ले लेन है लोहे की ऊपर लाइटें लगी हुई हैं ऊपर चारों तरफ ढ ढलाई है पहाड़ को छेदा गया है और पहाड़ को इस तरफ है

कुछ सुनामी जैसी दिख रहीं है ईंट दिख रही है कचरे दिख रहे हैं पेड़-पौधे दिख रहे हैं जो की चिपके हुए घास हैं।

काले काठी रंग की यह फर्श है इसके नीचे आसमानी कलर पूति हुई है पंखा लगा हुआ है।